और पीछे दिख रहा है कि काफी सारे पेड़ पौधे लगे हुए है काफी सारी हरियाली नज़र आ रही है।

सामने कोई एक होटल नजर आ रहा है जिसमें कुर्सियां मेजें लगाई हुई है यह खाना खाने का होटल है।

सेल पे लग रहा ये किसी दुकान में खड़ा हुआ है और इस व्यक्ति के पीछे भी एक दो लोग और खड़े है।

और फोटोकॉपी का मशीन लगी नजर आ रही है और पास में दो तीन कुर्सी भी लगी हुई नजर आ रही है और --

दुकान खुली हुई है और उसके दुकान के आगे हर्ष एंड सन नाम का --

और ये रात्रि का समय लग रहा है कि लाइटों का प्रकाश भी दिख रहा है।

आगे खिड़की चढ़ी हुई है सीरिया के और उसमें आगे लिखा हुआ है एंट्री और खिड़की छोटी वाली है वो खुली है इसमें से एक व्यक्ति --

सामने दिख रहा है यहां पर कोई दो मूर्तियां है मूर्तियों के दोनों गलों में माला पहनी हुई है और आगे --

इस रखे हुए हैं उनमें फूल भरे हुए है और पीछे लकड़ी का अलमारी बनी हुई है और उधर दीवार में टाइलें लगी हुई है।

जो इंजीनियरिंग लग रहा है और इसके हर टीशर्ट पहनी हुई है और सिर पर हेलमेट लगा हुआ है और पीछे --

और पेड़ पौधे भी अलग अलग तरह के दिखाई दे रहे है।

यहां पर दिख रहा है कि यह कोई मकान है बहोत बड़ा मकान है।

और इधर ये व्यक्ति कोई पत्थर पे बैठा हुआ यहां पर काफी पत्थर सारे गिरे--

और यह होटल रात्रि का समय लग रहा है काफी अंधेरा इस होटल में लाइट लगी हुई है जो सारी जल रही है कहीं लोग है जो --

और इस दुकान में दो पंखे लगे हुए हैं जो छत पे लगा हुआ है।

खेलने की जगह है और यहां पर काफी सारे पेड़ पौधे लगे हुए है।

हो सकता है बाईकें बैंक के मैनेजर लेकर आए होंगे और ग्राहक भी बाईकें लेकर आ सकते है।

ये एक बहोत बड़ी बैंक है और इस बैंक में ए_टी_एम की सुविधा भी उपलब्ध है।

और इस मंदिर के बाहर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए हैं।